यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है नीचे की तरफ सीढ़िया लगी हुई है ऊपर की तरफ गेरुवे रंग से रंगा हुआ है और एक पेड़ लगा हुआ हैं ।

कवर रखा हुआ है लाल रंग का सफ़ेद रंग की कुर्सी है स्टूल रखा हुआ है।

यहाँ पर एक कार है जिसका इंजन खुला हुआ है और एक लाल कलर का पहना--

और खुर्शियाँ रखी हुई जिस पर सफ़ेद रंग का कवर चढ़ा--

नीचे सफ़ेद रंग का टाइल्स लगा हुआ है फर्श पर और ऊपर की तरफ बहुत सारी लाइटे लगी है एक अन्य व्यक्ति भी खड़ा हुआ हैं ।

और वहाँ बहुत सा-- यहाँ पर फोकस लगा हुआ है लाइट्स जल रही है बहुत सारी कुछ बाइक्स खड़ी हुई है स्कूटी खड़ी है।

और नीचे की तरफ शीशा लगा हुआ है पाइप लगी हुई हैं इस इमारत पर--

और खिड़की लगी है ऊपर जो जिसपे शीशा लगा है सामने की तरफ स्नैक बाज़ार लिखा है।

यह दो मंजिला इमारत है ऊपर की तरफ काफी सारी खिडकियों में शीशे लगे हुए है खिड़किया बनी हुई है दरवाजा बना हुआ है।

मेज रखी हुई है ऊपर रखी हुई है बर्तन रखे है नीचे की तरफ भी स्टील के भी रखे है कुछ बर्तन--

यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसने जैकेट पहनी हुई है हाफ और शर्ट पहनी--

यहाँ पर एक पूल है जिस पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए है महिलाए है बच्चे है और ए कुछ बाइक है।

और दीवाल का रंग यहाँ पर लाल रंग से रंगा हुआ है लाइट्स लगी हुई है चश्मा रख--